जिससे पता चलता है की ये बच्चे--

फोटो भी है वो रोड के दूसरी साइड खड़ा हुआ है।

यहां तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने घर के नेम डाले हैं।

है जिसमें एक मशीन लगी हुई है तार है पाइप है।

हैं साथ ही एक ई- रिक्शा हैं और पानी भरा रखा हैं।

ड्रेस हैं यह कोई होटल लगता है।

एस_एफ हिसार के पिक्चर है जिससे यह पता चलता है।

यह एक बिजली की दुकान है।

कोई छोटी डोरी है तो कोई बड़ी है।